इस पिक्चर मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है।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

यहां पे मुझे खीरा दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे मुझे एक डेस्कटॉप भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे पेड़ भी दिख रहा है।

यहां पे मुझे टी शर्टस भी दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे मुझे मोजे भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक टू व्हीलर शोरूम दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर मे मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक पिलर भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक दुकान दिख रहा है।

यहां पे मुझे एक बस दिख रहा है।

यहां पे मुझे एक आसमान भी दिख रहा है।